बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

मुझे एक चित्र दिख रहा है।

चित्र में मुझे एक किला दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे एक जिम दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में एक बस दिखाई दे रही है।

चिप्स के पैकेट दिखाई दे रहे हैं मुझे एक--

कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ लाइट दिखाई दे रहे है।